जिसका नाम आइडियल है उसपे सभी विषयों की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था लिखी गई है| और सीढियाँ दिखाई दे रही है जिसपे चपलें रखी हुई है।

पीछे में एक पर्दा दिख--

ऊपर जाने के लिए सीढियाँ दिखाई दे रही है जो लाल रंग की दिखाई दे रही है ऊपर आसमान दिख रहा है नीचे कुछ हरी भरी घासे दिख रही है ।

के सामने में बैग और बुक्स हाथ मे रखे हुए है और एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जिसपे ये सर पढा रहे है और एक रेड कलर की चेयर है जो खाली दिखाई दे रही है बोर्ड के पीछे एक झोंपड़ी नजर आ रही हैं।

सामने में कुछ लोग खड़े हुए है और रस्ते पे कुछ बाइक नजर आ रही है बिल्डिंग का कलर हरे रंग का दिख रहा है।